इमेज मे शरदंगली की विषय वस्तु है।

तीस हजार रूपए लगा कर एक साझेदार पूंजी पर ब्याज छ परसेंट --

यदि अमित बाबू एक अप्रैल दो हजार पंद्रह को एक व्यवसाय है तो साझेदार स्थापित करते है।

वर्ष के पच्चीस सो रुपय वेतन देने की अनुमति है वर्ष के दो हजार उनीस बीस का लाभ बाबुल के पर निर्धारित --

यह बीत वर्ष के दौरान किसी के द्वारा अतिरिक्त लगाई जाती है तो अतिरिक्त ब्याज का परिकलन लगाई गयी --